यह एक स्ट्रेट मार्केट के अ जगह हैं इसके आस पास कुछ बिल्डिंग कुछ मंदिर कुछ लोग दिखाए गए हैं जो कि खड़े हैं।

यह किसी घर का एक्सटेरियर है इसमें बाहर एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है इसमें बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां की गई है।

ऊपर बाहर का बालकनी दिखाई दे रहा है एक फ़्लोएर पॉट दिखाई दे रहा है जिसमें ढेर सारे फ़्लोएर लगे हुए हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है।

ये किसी इंस्टिट्यूट या किसी कॉलोनी के बाहर का दृश्य है इसमे अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसमे आस पास कुछ तराजू और कुछ बेनर्स दिखाए गए है जिसमे इनको प्रतीत किया गया है ।

इस द्रश्य में हम देख सकते है की यह एक स्विमिंग पूल का द्रश्य है इसके आस-पास कुछ बॉउनडेरी अ बनाई गई है जो के स्विमिंग पूल को कवर कर रही है आस-पास बड़े पेड़ लगे हुए है कुछ स्ट्रेट लाइट लगी हुई है।

इनमे नीचे एक फ्लोर भी बना हुआ है जिनमे इनका अं पूरा उनकी डीटेल दी गई हे ऊपर अ नीला आसमान दिखाई दे रहा है आस -पास बड़े पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है जो कि इस पार्क को बोहोत ही सुंदर बना रहे है।

यह एक फल की अ दुकान है इसमें कई स कई अ कई प्रकार के फल दिखाई दे रहे है ।

इस दृश्य हम देख सकते है की यहाँ दो बाइक खड़ी हुई है इसके सामने एक लेक बना हुआ है।